आदमी दिख रहा है जहां पर जिसके पास दो साइकल है।

रोड साइड की कुछ दुकानें दिख रही हैं।

सामने में एक पुल दिख रहा है लकड़ी का पुल है ये--

और टेबल के नीचे भी बहोत सारे लैपटॉप रखे गए है।

टैन शीटस के जो पैकेट्स है वो भी है--

और ये सभी यहां पर बनने के लिए आए हुई है।

और यहां सामने भी एक काली गाड़ी और--

और एक ऑटो के पास खड़ा हुआ है।

बस्तर डेरी फार्म इ दुकान का नाम है।

जहां पर भारी पोस्टर लगा है खाने का--

और यहां पर एक लड़का दिखाई दे रहा है।

बहोत बड़ा पुलिस स्टेशन है ये शिमला का और यहां पर सैल्यूट कर रहा--

और यहां पर हैंड सैनिटाइजर या हैंड वॉश हमें दिख रहा है।

और यहां पे फ्रेश फ्राइड फूड मिलते हैं हर--

इस फोटो में मुझे सामने कुछ लोग चलते हुए दिख रहे हैं और एक लड़का फोन पर बात करता हुआ चल रहा है।

इंडिया इंडियन बैंक का जो है ए_टी_एम है।

थोड़ी थोड़ी बर्फ दिख रही है कम कम जगह मैक्सिमम जगह बर्फ पिघल चुकी है।